चित्र में सामने बहुत बड़ा महल दिखाई दे रहा है।

एक मुसलमान जाते हुए दिखाई दे रहा है जिसने टोपी लगा रखी है बुरखे में एक औरत भी जाती दिखाई दे रही है कई सारे स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है आसपास भी कई सारे घर दिखाई दे रहा है।

पौधे दिखाई दे रहे हैं सड़क भी दिखाई दे रही है खंबा दिखाई दे रहा है काफी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

वस्त्र पहने हुए दिखाई दे रहे हैं मुकुट लगा हुआ दिखाई दे रहा है कैलेंडर टांगा गा वह दिखाई दे रहा है पेड़ भी दिखाई दे रहा है काफी सुंदर सफेद रंग में मूर्ति दिखाई दे रही है।

पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहा है काफी विशाल मंदिर दिखाई दे रहा है झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बादल दिखाई दे रहे हैं कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

स्लाइड लगी हुई दिखाई दे रही है जीने दिखाई दे रहे है बोर्ड लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।